एक जिम का दृश्य दिखाया हुआ है।

इसमें कुछ मछलियां दिखाई दे रही हैं।

प्लॉट नंबर इक्यावन सेक्टर फाइव आई_एम_टी मानेसन गुरुग्राम है।

पर्यटक स्थल की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर किसी वर्क शॉप की तस्वीर लग रही है।

यह एक दवाइयों की दुकान है तथा इसके साथ में फ्लेक्स प्रिंटिंग --

यहं किताब की दुकान की तस्वीर हैं।

इस दुकान का नाम तेजा बुक स्टॉल है।

इस तस्वीर में दो गाड़ी दिखाई दे रही है।

दो बाइक खड़ी हुई है।

है तथा यहां पर बहुत सारी कपड़ों की दुकान भी है।

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल की तस्वीर है यहां पर बहुत--

सारे साधन दिख रहे हैं।

यह एक दुकान की तस्वीर--

सारा सामान रखा हुआ--